इन्हें ये सब करते रहना चाहिए ताकि यहां जीवन में कुछ कर सके।

अपने आप पर विश्वास रखिए और इस बात का ध्यान रखिये क्योंकि यहां बहुत ही सरलता पूर्वक ध्यान पूर्वक रखी जाने वाली बातें--

सो यहां पर बहोत ऐसी चीजें दिखाई गए है जो अपने काम की है। यहां पे बहोत सारे मशीन वगैरा लगे हैं। यहां पर बहोत सारी दर्शन चीजे लगी है।

यहां पर बहोत ही शानदार डी_जे दिखाया गया है। डी_जे को चलाने वाला एक आदमी होता है। यहां पे गाड़ी बहोत ही खास--

इसका आनन्द लेना बहुत ही ध्यान पूर्वक शान्ति पूर्व है इसका आंनद लेने के लिए आपको--

और जनता के लिए कुछ करना है तो आप अपने लिए कुछ करिए क्योंकि जनता आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाली आप अपने लिए खुद कमाओ।

शो आप उसका आनंद ले उन्हे नुकसान न पहुंचाये पेड़ पौधे नही काटे।

पेड़-पौधे इतना लाभदायक है कि पेड़-पौधे हमारे जिंदगी के लिए बहोत ही धर्मवीर और अच्छा कार्य करते हैं।

उपयोग करना अपना कर्तव्य है अपन उस समान का सही से उपयोग करें।

और वह हमारे लिए बहुत कुछ ऐसा करे जाते हैं जिनसे कि अपन को लाभदायक हो।

जिसे देखकर आप आनंद ले सकते हो और आनंद बहोत ही सानदार होता है।

और यदि हम हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारे लिए हानिकारक होती है। तो इसके हिसाब से ये चीजे हमारे लिए लाभदायक है जिसे हम खाते हैं।

यहां पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही खाने योग्य है और आप इसे यकीन मन मानिये की--

यहाँ पर पेड़-पौधे दिखाए गए हैं जो बहुत ही शानदार हैं जो नहीं जानते।